कुछ पोस्टर लगे हुए है जिनका फेस छुपा हुआ है।

कुछ गमले रखे हैं और कच्ची जमीन है।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

और बहोत सारी गाड़ियां दिख रही हैं।

और एक आदमी सीढी से उतर रहा है।

दिवारे सफेद कलर की है।

गार्डन में कुछ जानवरों की मूर्तियां रखी हुई हैं।

खम्बे लगे हुए हैं और कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

सड़क दिखाई दे रही है।

सड़क के पास बहोत सारी गाड़ियां दिख रही हैं।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट की है।

कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं लकड़ी की।

और पीछे दो डिराम रखे हुए हैं।

बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही हैं जिसके ऊपर लाल कलर की चुनरी पड़ी हुई है।

और फूलों से दुकान सजी हुई है।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

लाइटें जल रही हैं और भी लगे हुए हैं।

बहुत सारे कपड़े अलमारी में लगे हैं और कुछ हैंगर में टंगे हैं।

कुछ गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

अलमारियां दिख रही हैं जिसमें कॉपी किताबें दिख रही हैं।

लोहे कि गरी ग्रिल भी लगी हुई हैं।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

लोहे का गेट लगा हुआ है।

घर दिखाई दे रहा है जिसके दीवाले सफेद और लाल है।

एक टंकी रखी है छत पे।